उसके बगल में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे अह ये गाछ वृक्ष लोग है उसके बगल में बहुत सारा पत्थर लोक रहा है बड़ा बड़ा।

ऑरेंज कलर का डिब्बा में रखा है और येलो कलर का।

पिंक कलर का पका भी है बहुत सारे मिठ लगते हैं यहां पे प्लेट में रखा हुआ है अगल बगल में लीचीओ की गाछी भी है और--

यहां पे बड़ा सा फील्ड है यहां पे बहुत सारे--